इन दोनों व्यक्ति ने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं।

ये एक बहुत पुराने सरकारी दफ्तर की पिक्चर है यहां पर बहुत सारे केबिन बने हुए हैं।

सामने की तरफ कई सारे पुराने संन्दुक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक गेस्ट हाउस की पिक्चर है जिसका नाम बडोनी गेस्ट हाउस है।

बिल्डिंग के नीचे बहोत सारी दुकाने निकली हुई है जो अभी बंद है।

पीछे दुकान में एक येलो कलर की पेटी रखी हुई है।

ये एक पुरानी गिरी हुई इमारत की पिक्चर है जहां पर बहोत सारे पहाड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे है।

ये एक वाटरपार्क की पिक्चर है जहां पे स्विमिंग पूल करने के लिए बोहोत सारे इक्यूपमेंट्स दे रखे हैं।

तस्वीर में सीधी तरफ एक ठेला भी लगा हुआ है।

जहां पर इस नहर में दो भैंसे नहाती हुई दिखाई दे रही हैं।

जमीन पर कई लोगों की परछाई भी दिखाई दे रही है।

ये एक दुकान की क्लिक करी हुई पिक्चर है जिसका नाम है सिंह डिजिटल फोटो स्टूडियो --

यहां पे अक्सर लोगों ने अपना माक्स पहना हुआ है।

खिड़की से थोड़ी थोड़ी रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे कलर की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।